जहाँ पर बहोत सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं और कुछ लोग अपने बैंक के कारोबार के लिए यहाँ पर खड़े हैं जिनको की धन का आवश्यकता है वे यहाँ से निकाल रहे हैं अपने कार्ड के हिसाब से।

जो कि हमलोग भी बचपन में बहुत खेला करता थे कॉपी सारे-सारे कॉपी में लिखते थे और खेलते थे इस चीज़ --